हैं फूल भी लगाए गए और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बोहोत सारे उपकरण उपलब्ध हैं। से जो झूला स्लाइडर इत्यादि। इसके कारण यहाँ पर --

चौबीसो घंटे ये हॉस्पिटल खुला रहता है और यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सेवा उपलब्ध है जो चौबीसो घंटे रहती है।

यह एक ट्यूशन क्लासरूम है। जहाँ पर ट्यूशन क्लासरूम में काफी अच्छी पढ़ाई होती है। जिसका नाम --

बोहोत बड़ा गड्ढा एक झील का रूप एक तालाब का रूप ले लिया गया जिसमें इस तालाब के काफी गहराई है और यहाँ पर हमेशा पानी रहता है और यह --

हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं घने झाड़ियाँ भी हैं और इस पहाड़ से एक झरना भी निकलता है जो कि काफी --

सुंदर दिखता है इस झरने का पानी बोहोत ही साफ और --

फूल है। बिक्री करके यह खुद खुदरा विक्रेता है जो काफी --